इस तस्वीर में बहुत सारा कपड़े का दुकान दिख रहा है और बड़ा सा काउंटर दिख रहा है और कुछ कार्टून भी दिख रहा है और कुछ पंखा भी लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक बहुत बड़ा शादी का है जिसमे बहुत सारा टेंट लगा हुआ है सामने बहुत सारा कुर्सी भी लगा हुआ है।